बुल्लेट मिलते हैं बुल्लेट गाड़ी बहुत ही बढ़िया गाड़ी रहते हैं वो बहुत ज्यादा आवाज़ करते हैं उसका आवाज़ सुन --

जिसे जीमत लोग जिम करते हैं यहाँ बहोत सारे लोग जिम कर --

कोई बाहर से खत भेजते हैं और पोस्ट ऑफिस में अब खाता भी खोला जाता है उस खाते के नाम है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ।

यह एक मंदिर है इस मंदिर में हिन्दू धर्म के लोग जाते हैं पूजा करने के लिए।